यहां काफी सारे लोग बैंक में आए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां अ लाल रंग की सीढ़ी दिख रही है।

पत्थरों से बनी बहोत बड़ी चट्टाने दिखाई दे रही है।

यहां पे हमें अ गुफा बना है।

दो मंजिल की दिखाई दे रही है।